रेसिंग ग्राउंड है यहाँ पर बच्चें रेस कर रहे हैं य गा गा ग्राउंड रेड कलर का हैंइसमें पट्टे बने हुए हैं ब्रिक वाले पट्टे बने हुए हैं लाइन वाले पट्टे बने हुए हैं।

ये सामने एक बोर्ड भी लगा हुआ हैं सामने की तरफ कुछ व्यक्ति छाता लिये हुए ज़मीन पर बैठे हुए हैं ऊपर की तरफ आसमान खुला हुआ हैं।

कुछ बास्केट रखी हुई हैं सामने की तरफ एक बोर्ड भी लगा हुआ हैं जो सामने की तरफ रास्ता जा रहा हैं उसमे बोर्ड लगा हुआ हैं।

पीछे की तरफ एक रैक में बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं ऊपर एक घड़ी लगी हुई हैं नीचे टेबल पर कपड़ा बिछा हुआ हैं।

स्टेज है यहाँ पर सीढ़िया बनी हुई है जो पिंक कलर की है ऊपर स्टेज ब्लैक कलर का है।